एम दिख रहा है और वहा पे ब्या बोर्ड लगा हुआ है वहा पे एक आदमी खड़ा हुआ है ।

कुछ एक बरनी दिख रही है उसमें कुछ चॉकलेट नज़र आ रहे और वहां पर एक रैक है उसमें कुछ बिस्किट के पूड़े और सामान रखा हुआ नजर आ रहा है और वहाँ पे एक फ्रिज है उसमें कुछ कोल्ड्रिंक्स बोतल रखी हुई नज़र आ रही है।

के पास जाने के लिए वहा पे सिडिया बनी हुई है एक ग्रिल दिखाई दे रहा है वहा पे पेड़ भी दिखाई दे रहे है दिन का समय आसमान--

साईकल के ऊपर बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए है द्रक्षे है और ऑरेंज है वहाँ पे जो ल आदमी खड़ा है उसने लाल कलर का ड्रेस पहना --

पेड का बूट दिख रहा है और वहा पे जो दिन का समय लग रहा है।

गूलाब फूल दिख रहे है वो लाल कलर के है वहा कुछ ओर भी सामान दिख रहा है पर वहा पे कोई--

ये और जो शॉप है वहा पे एक लाल कलर का डस्टबिन दिख रहा है ये और उधर एक बाइक दिख बाक जो बैठने के लिए जो बाक होता है। वो दि दिख रहा है उस पर औरत बैठी हुई नजर अ रही--

दुर्गा माता का मूर्ति दिख रही है और महादेव जी की मूर्ति दिख रही है और उनके पीछे पहाड़ बनाया हुआ है।

हमें पटरी दिख रही है उसके रेलवे के रूल दिख रहे है ऊपर से जाने आने के लिए पुल बना हुआ देख रहा है ब्रिज बना हुआ दिख रहा है लाइट्स की तारे दिख रही है और दुसरें पटरी से ग्रीन कलर कि ट्रेन गुजरती हुई देख रही है।

बना हुआ है दीवार नजर आ रहा है और पेड़ नजर आ रहे है कुछ सिडिया भी वहा पे दिख रही है जो ऊपर छड़ने के लिए--

वहा पे मज़े के जैसा कुछ बना हुआ लोहे का और भी कुछ इन्स्ट्रुमेंट वहा पे दिख रहे है और दूर कुछ घरे नजर आ रही है। बड़ासा--

यह आसमान दिख रहा है बाजू में कुछ बिल्डिंगा दिख रही है और वहापे कुछ ईंट और पत्थरे पड़े हुए नजर आ रहे --

किताबों की शॉप नज़र आ रही है और वहा पे लाइट का लाइट जो है वो शुरू है वहा पे कुछ आदमी और एक औरत दिख रही है और अंदर पे कोई एक आदमी बैठा हुआ नज़र आ रहा है।

दिख रहा है। वंहा पे उस कार्यलय कि बड़ा सा जो येह बोर्ड लगा हुआ नजर आहै रहा है। दिन का समय नजर आ रहा है।

छत पर कुछ दो आदमी हथोड़े से और किले से कुछ ठोकते हुए नजर हा रहे है और वो वा हेलमेट पहेने हुए है उनके जो ये लाल कल के एप्रोन पहने नजर हा रहे है।